यहाँ पर हमे एक हवाई अड्डा दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का है हमें कुछ --

यहाँ पर हमे एक स्टेडियम दिखाई दे रहा है इसमें कुछ व्यक्ति नजर आ रहे है स्टेडियम में--

यहाँ पर एक कमरा दिखाई दे रहा है कमरे में एक गेट लगा हुआ है यहाँ पर एक--

और टेबल भी लगी हुई है टेबल पर कुछ सामान रखा हुआ है और टेबल सफेद कलर की है और दीवार--